बहुत दूर तक सफ़र कर सक--

यह कोका कोला का ऊपर में पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ बहुत दूर- दूर से लोग इसे देखने और घूमने के लिए आते हैं।

इसमें हमें एक आदमी पुरस्कार देता हुआ नजर आ रहा हैं। किसी--

पिक दिखाया गया है जो दिखने में काफी सुंदर और काफी बड़ा है।

मूर्ति दिखाया गया है जो देखने में काफी सुंदर और --

और यहाँ बहुत सारे ब्रेंच वगेरा लगे हैं।

पढ़ लिख के आये हैं और ये बोहोत ही अच्छे से इलाज करते हैं। इसीलिए लोग यहाँ बहुत दूर दूर से इलाज कराने के लिए आते हैं।